डांस करती हुई दिखाई दे रही है जिनमें से एक लड़की --

और उसके नीचे में कुछ लड़के लोग खड़े हैं।

और उनके एक बगल में एक लड़का साइकिल में नीचे झूका हुआ है और एक पेड़ हैं।

यह एक कृष्ण भगवान की मूर्ति है जोकि--

उस स्कूल का रंग सफ़ेद का हैं।

खड़े हुए दिखाई दे रहे है और बिल्डिंग भी दिख रही हैं।

और सब तरफ अच्छे से ड्राइंग की गई है।

और उसके किनारे में कुछ टावर भी गड़ी हुई है और पोस्टर भी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

यहाँ एक प्रकार का पुराना घर दिखाई दे रहा है जो कि बहुत से सीढ़ी है नीचे में --

उस सीढ़ी के किनारे-किनारे में कुछ पेड़-पौधे भी--

फूल सब को उगाये हुए है और पेड़ भी लगा हुआ दिखाई दे रहा हैं।